एक कमरा दिख रहा है उसमें बहुत सी पिक्चर दिख रहे हैं और सी_सी_टी_वी कैमरा है एक गेट एक दरवाजा है।

और बहोत सारे पेड़ पौधे हैं इनके पीछे एक बड़ी सी इमारत दिखाई दे रही है।

अपने सर पर अ माल लिए दूसरी तरफ जा रहा हैं तीन कुर्सियाँ हैं जिनका रंग लाल हैं।

मेरे सामने एक बहोत ही विशाल समुद्र दिखाई दे रहा हैं।

जिसका नंबर है एम एच जीरो फोर एल एम डबल फोर और इसमें दो गाड़ियां दिखाई दे रही हैं।